आस-पास बड़े-बड़े घर नजर आ रहे है और ग्राउंड में पेड़-पौधे भी है।

ये एक बड़ा-सा ग्राउंड है जहां पे बहुत सारे प्लेयर्स मिलकर क्रिकेट खेल रहे हैं और ये ग्राउंड बेला की तरफ है।

ये एक दुकान है जो गया में टॉवर चौक के पास है ये एक वूलन की दुकान है यहाँ पे बहुत ही सुन्दर-सुन्दर और अलग-अलग डिजाइंस के स्वेटर मिलते हैं।

ये एक गाड़ी है जहां पे मतलब खाने का सामान बिकता है गाड़ी से चला चला कर लोग उसे बच --

ये रोल है एक रोल जो चार दोस्त मिलकर न्यू गोदाम के पास एक फूड काउंटर में खा रहे हैं।

ये सास-बहु फ़ूड कोर्नर है जो गया में स्टेशन रोड के पास है यहाँ पे हर तरह का खाना मिलता है चाइनीज़ राजस्थानी --